बहुत सारे लाइट भी लगे हुए है खाने वाले चीज है यहां पर एक--

यहां पर एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है पार्क के अंदर बहुत सारे पेड़ पोधै लगे हुए हैं।

यह बहोत बड़ा बनाया गया है।

यहां पर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं बहुत सारे लोग जा रहे आ रहे हैं।

यहां प बहोत सारे लायटे वगैरा लगे हुए हैं।

यहा पे एक खम्बा दिखाई दे रहा है लाइट लगे हुए है यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए है।

ये बहोत सारे जिम करने वाले मशीनें रखे गये है यहां प एक बोर्ड लगा हुआ है यहां पे ब लाइटें लगे हुए हैं।

यहां पर एक कुछ डिजाइन का बनाया गया है।

यहां पर एक घर दो घर दिखाई दे रहे हैं यहां पे दरवाजे भी खिड़की लगे हुए हैं।

के फूल बनाए गए हैं यहां पर लाइटें वगैरह लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति ख बैठे हुए हैं यहां पर कुछ प्रोग्राम करा रहे हैं यहां पर बहुत सारे।

यहां पे एक बहोत बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है।